यहा एक दुकान है दुकान का गते सज्ज हुआ है कच का दरवाजा है।

यहा एक दफ्तर की बिल्डिंग है।